यहाॅं पर एक गेट है जो कि इसपर लिखा है कुछ अलग ही भाषा लिख दिया है और यहाॅं पर काफी सारा पेड़ लगे हुए हैं यहाॅं पर एक अन्डरलाइन जैसी लाइन गई है।

यहाँ वाइट कलर का घर है और यहाँ पर एक पेड़ है दो पेड़ है यहाँ पर यहा बीच में एक खंबा है--

यह मंदिर कहाँ है जहाँ पर जगदम्बर मा दरबार है बड़िया का मंदिर है जो काफी बड़ा है व्हाइट कलर का है यह मंदिर और बहुत ऊँचा है यह मंदिर यहाँ पर काफी सारे लोग आते--

पार्क और यहाँ पर यहाँ पर ये काफी सारे लोग खड़े हुए हैं और बच्चे खड़े हैं एक आदमी खड़े है। पार्किंग के अंदर हरियाली है एवं लाल चट्टान है यहाँ। --

यहाँ पर ये हरियाली हो रही है यहाँ पर यहाँ पर काफी सारी भिड़ है यहाँ पर पेड़ वो लगे हुए यहाँ वो पेड़-पौधे लगे हुए यहाँ पर और यहाँ पर ये व्हाइट-व्हाइट कुछ डला।